एक रूम में रूम में तीन लड़का है पीछे के दीवाल के कलर लाल है पीला है।

एक फोटो है फोटो में तीन कलर का क्रीम रखा हुआ है गोल्ड प्लस उस दुकान है दुकान के--

चारों तरफ सजा हुआ आग रखा हुआ है और टेबुल है टेबुल के ऊपर गमछा और तीन--

एक फोटो है फोटो में एक जंगल है जंगल में एक आदमी उंगली दिखा रहा है जंगल में हरे भरे पेड़ पौधे हैं और जं--

छत पर पंखा चल रहा है और टाइल्स बिछाया हुआ है और कुर्सी लाल का लगा है टेबुल है और दो गेट है और एक टे एक पंखा है।

एक रूम है रूम दवाख़ाना का है एक पर्दा ब्लू कलर का टांगा हुआ है।

दवाई सजी हुई है और कुर्सी लगी हुई है टेब का टेक बना हुआ है और चार डिब्बा रखा हुआ है ये कुर्सी है और चार पंखे चल रहे हैं।

टेबल है पंखा है दवाई सजी हुई है और टेबल लगा हुआ है बाहर एक औरत बैठी हुई है और अंदर पंखा है।

काउंटर पे आदमी नहीं है और चारों तरफ कपड़ा सजा हुआ है और नीचे पट्टियां बिछाया हुआ है।

लाल फर्श बिछा हुआ है और दुनो हाथ एक हाथ उठा हैं अपनी--

एक फोटो है फोटो में दो आदमी है एक आदमी सिलाई कर रहा है जिसमें लाल कलर का गड्ढा है और मशीन लगा है कपड़ा चापने वाला उज्जर कलर का--

एक लगाया हुआ है आरो पन्नी के पन्नी पे मिरचाय रखा हुआ एक बोरा है बोरा में आलू रखा हुआ और नीचे टीना बिछाया हुआ और --

एक रूम है जिसमें पंखा लगा हुआ है और मेट्रो ट्रेन का चित्र बना हुआ है और --

बगल में एक आदमी बैठा हुआ है जो टेबल पर बैठा हुआ है और कुर्सी लगाकर एक आदमी बैठा हुआ है जो--

ऊपर दु रंग का है जिसमें एक उजला है लाल है बहुत सारे आदमी बैठा हैं जो टोपी--

मुंह है मुंह के ऊपर गाड़ी के ऊपर गाड़ी रखे हुए बहुत सारे लोहे की दुकान है दुकान में एक टेबुल लगा है जिसके उपर ।

लाल कलर का पेहना है ऊपर कैप लगाया हुआ है और एक आदमी जो हाड़ा पिना है और नीचे फर्श है फर्श जो उजला कलर का है।

एक आदमी एक फोटो है जिसमें उजला कलर का एक मकान है जिसमें --

रखा हुआ है जिसमें लोहे में छेद है और उसके बगल में एक पत्ता गिरा हुआ है एक लोहा जो लंबे सीधे उसमें कौनों काम से रखा--

एक रूम है जिसमें एक दरवाजा है दरवाजा के बगल में एक ग्रिल बना हुआ है और सीढ़ी लगा हुआ है।

काला उजला बल्ब बर रहा है उसके बगल में झाड़ी हैं और उसके बगल में--

एक फोटो है फोटो में ग्रिल लगा हुआ है जो ब्लू ग्रिल है उसके बगल में जिस के ऊपर --

उजला कलर का वाटी है बक्सा है जिस पर हर एक प्रकार के दुकड़ी रखा हुआ है और हर एक रंग के समान से रखा हुआ है।

लाल पियर इस रंग का काउंटर बना हुआ है जिसके ऊपर एक तराजू रखा उसके बगल में एक डब्बा है।

उसके बगल में पांव रोटी का डब्बा है उसके बगल में हर प्रकार का डब्बा है और मिठाई है मिठाईयां जो उजला है।

एक फोटो है फोटो में मछली रखा हुआ है जो एक ही मछली है और एक आदमी है जो उसको पकड़ा हुआ है।

एक लड़का है जो कंप्यूटर में उसके बगल में कंप्यूटर के बोर्ड लगा हुआ है।

और एक लड़का है जो एक मरीज को पकड़ कर मशीन दर खड़ा है लड़का है जो क टी लाल कलर का कपड़ा पेना हुआ है।

एक फोटो है फोटो में एक दुकान का चित्र जिसमें पांच फ्रिज रखा हुआ है और नीचे उजला कलर का पेंट है।